यह कोई स्कूल है जहां बच्चे लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया है बच्चे लोग मस्त पेपर के --

यह एक लकड़ी का दुकान है और यहाँ मस्त लकड़ी के समान मिलते है एक आदमी लकड़ी बेच रहा हैं।

बगल में एक पेड़ है जो बरकट का दिख रहा है।

यह एक छत है जहाँ घेराव के लिए यहाँ पर घेराव किया जा रहा है जहाँ इटे अ रखी गई हैं और बालू में सीमेंट डाल कर उसको मिलाया जा रहा है।

यह एक बहुत बड़ा चर्च है जहाँ लोगो हर संडे को आते हैं।

यह एक एम म रेल्वे स्टेशन है जो सूरजपुर रोड आ कर के लिखा हुआ है और यहाँ एक पुलिस जी आ रहे है ऐसा प्रतीत होता है कि यह--